चल चित्र में ठीक है किसी पार्क का रोमांचक चित्र लिया गया है ठीक है जहा पर लोग आपको योगासन करते हुए यानी की डिफरेंट टाइप की योगा करते हुए दिखाई देंगे।

उच्चित मूल्य की दुकान है कृपया एक बार सेवा का मौका यहाँ पर जरूर देवें ओके ।